इस दृश्य में हमें एक ग्राउंड नजर आ रहा है।

इसमें हमें सनक्रॉस लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इसका पानी हमें बहोत ही साफ सुथरा दिखाई दे रहा है।

इसमें एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

दूर हमें कुछ दुकानें भी बनी हुई दिख रही हैं।

यह शायद किसी टायर्स की शॉप भी--